स्वागत करता हूँ मैं वहाँ किराने की दुकान दिख रही है वहाँ पर कुछ बहोत सारी कारे की दुकान भी दिख रही है वहाँ देखा जाए तो सोचू तो टीन की चद्दर भी दिखाई दे रही है वहाँ पे कुछ जगह कई जगह पेंट दिखाई दे रहा है वहाँ हरे-भरे पौधे लगे है अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है अच्छा लग रहा है।